जो मोटर लगाई हुई है ये असल में पटवन कर रहे है बगल में एक बहुत बड़ा घर भी है |

पौधे लगाए हुए हैं यह देखने में काफी अच्छे लगते हैं यह--

इस बेंक मे आते हैं । वे पैसा जमा निकासी करते हैं । लोन लेते हैं | बगल मे एक ए.टी.एम. भी है ।